गाड़ियां भी खड़ी हैं यहां और बहुत सुंदर नजारा दिखा रही है यहां।

लाइट्या बहोत सुंदर लग रहीं हैं और अच्छी भीं लग रहीं हैं कुछ कां--

और चले जाते हैं बहुत ही सुंदर है और अच्छा भी है इसका कलर लाल है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है और अच्छा भी।

और अकबारे भी बहुत सुंदर हन और अच्छे भी ह न।

ये एक तस्वीर दिखाई दे रही है ये तस्वीर एक घर की है जो घर बहुत ही सुंदर है और इसमें कलर किया हुआ है घर एक कोठी टाइप है।

अच्छी योगा हैं योगा करना तंदुरुस्त रहता हैं और अच्छा लगता हैं।

ये एक तस्वीर दिखाई दे रही हैं इस तस्वीर में ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे रुख लगे हुए हैं और बहुत ही--

एका एक लड़की डांस कर रही है।

ये एक तस्वीर दिखा रही है इस तस्वीर में दिख रहा है कि एक ऑटो --

तस्वीर हैं लेकिन बच्चों को नुकसान पहुंचाना बहुत गलत बात है।

सजावट पूरी तरह करने में मेहनत कर रहे हैं बहोत ही सुंदर दिखे--